दीवाल है जो दीवाल का कलर सफेद है।

काला है सफेद है पेड़ है लम्बे पेड़ है तना काला है और पत्ते थोड़े हरा कलर के भी है।

ओल्स ब्लैक एंड व्हाइट है। और ब्लू कलर है और सफेद कलर पिंक कलर है।

जो सफेद कलर की है और कुछ छोटे-छोटे टुकड़े हैं किसी के इंसानों के जो पीले कलर के हैं एक बड़ा सा है काले कलर --

और इनका जो कलर है काला कलर है पीला कलर है लाल कलर है और ब्लू कलर है और हरा कलर है।

डी_ जे एक खम्भा है सफेद कलर का और डी_जे लाल कलर में लिखा हुआ है ।

दो कुत्ते हैं। कुत्ते का कलर काला है एक का धोरा है और ये बैनर लगा हुआ है जिसमे सफ़ेद कलर है लाल कलर है।